इसमें जो है बैनर वगैरह भी लगे हैं छोटे से और काफी अच्छा जो है मकान है टाइल्स वगैरह इसमें सब लगी --